और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पेड़ सुखा हुआ है और यह कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है नगर पंचायत सोना।

बीच में झूला लगा हुआ है जहां से कुछ घांस हटाई गई है।

कल और भी बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं यह अभी नई दुकान खुली है इसकी ओपनिंग हुई है।

यहां पे स्पीकर लगा हुआ है और यहां माइक भी लगा हुआ है यहां पे बहुत सारे जने है।

यहां पे घोटनी चमचे और भी बहुत सारी चीजें बने हुई हैं यहां एक लड़का है।

और बहुत सारे बच्चों के बड़ों के सब के कपड़े हैं यहां पे ये अलग अलग अलमारी में हुए हैं।

यहां पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे छोटे पत्थर दिख रहे हैं और बड़े बड़े भी पत्थर हैं।

यह एक शॉप है यहां पे सारे मच्छरदानी रखी हुई है मच्छर को मारने के लिए --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

यह एक मस्जिद की फोटो है। जहां पे एक मुस्लिम खड़ा है यहां पे चटाई बिछी हुई है।

और एक विंडो भी बनी हुई है पास में एक और पुराना घर भी बना हुआ है इस साइड पार्किंग में दो गाड़ियां खड़ी है स्कूटी खड़ी है।

सड़क की फोटो है जहां पे ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है और एक स्कूटी खड़ी है।

यहां पे लोग बैठते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं बाहर में स्विच भी लगे हुए हैं आस पास।

यह एक पार्क की फोटो है जहां पे बहोत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे मेंज लगी हुई है ग्रीन रेड कलर की और ब ब्लू कलर की यहां पे बहोत सारी चेयर भी रखी हुई है।

बड़ी बड़ी मूर्तियां और यहां पे कप गिलास मेज रखने के लिए सजावट की डेकोरेशन करने के लिए और बहुत सारे --

ब्राउन कलर के और यहां पे नीचे मार्बल लगा हुआ है यहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है शॉल के अलावा।

यहां पे बहुत सारी मिट्टीयां हैं और इस मिट्टी में खुदाई चल रही है यहां पे तीन लोहे के पाइप रखे हुए हैं।